यहाँ पे एक बिल्डिंग दिख रही है जिस पे टूटे फूटे खिड्किया भी लगी हुई है।

इस फोटो में बहुत बड़ा तालाब दिख रहा हैं। जिसमे बड़ासा पिले कलर का बोट भी चल रहा हैं। जिसके ऊपर कुछ खम्बे लगे हुए हैं।

जो की पन्नी से ढका हुआ हैं। ऊपर कुछ लाइट लटक रही हैं। बाहर एक गाड़ी नजर आ रहा हैं। सामने गेट में एक चप्पल नजर आ रही हैं।

इस तस्वीर मे बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है लोग काफी मात्रा मे बैठे हुए है पीछे कोई अंकल फोटो खींच रहे है जो की उनके बात सुनके सब हंस रहे है।

कुछ लोग अच्छे से पूजा कर रहे है सामने धुआँ भी निकल रहा है मंदिर के बाहर कुछ पुतले बने है कुछ फूल भी लगे हुए है कुछ लोग सामने खड़े हुए है।

इस तस्वीर में सामने बौद्ध जी की मूर्ति बनी हुई हैं जो की ऊपर बना हुआ हैं।

इस तस्वीर में बहुत सारे आदमी हैं जो की कुछ लोग पर्ची लेकर बैठे हुए हैं।

इस फोटो में कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो की छत की ढलाई कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे सीमेंट भी डाला हुआ हैं। लोग खड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोहे के रॉड डले हुए हैं।

यह तस्वीर किसी पुल के निचे कि हैं। जिसमे लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं। सामने स्वच्छ का एक बड़ा--